पट्टियां हैं वो अ रेड कलर की हैं इसमें यहाँ पर जो छोटे-छोटे अ क्या बोलते हैं खिड़कियाँ बनी हुई हैं खुला हुआ आसमान है उसके जस्ट सामने भी बिल्डिंग है।

जंगल की जगह है जहाँ पर जमीन में मिट्टी तो है इतनी उपजाऊ नहीं है लेकिन यहाँ के जो पेड़ है वो बहुत अधिक उपजाऊ लग रहे है और यहाँ पर इनकी पत्तियां जो है धीरे-धीरे बढ़ रही है।

ले है जहाँ पर ये चिकित्सालय की बिल्डिंग है वाइट कलर की और जो आगे का दृश्य है वहाँ पर बोहत सारे घास के घास के घास फूस उगी हुई है बोहत बड़ा पेड़ है छोटे छोटे--

हॉस्पिटल लग रहा है ये हॉस्पिटल के नीचे की तस्वीर ली गई है ये बहोत बड़ा हॉस्पिटल जो है वो वाइट कलर की अ पुताई से पुता हुआ है और ये मिश्रा हॉस्पिटल --

का मॉल है जो बहुत बड़ा है और यहा पर अ-अ-अ ये वो दो-तीन फ्लोर बने हुए है यहा पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और नीचे की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा प्लेन है।

और इनकी मिट्टी जो है नीचे की लाल है भूर-भूरी है जो इतना देखने में उपजाऊ बन गई है लेकिन --

मैदान लग रहा है जैसा लग रहा है के दूर से ये दृश्य लिया गया पुल के पास से और मेला लगा हुआ है और ये गंगा का शायद किनारा भी है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है।

ये सुखे हुए पत्ते जो इन पेड़ो से झड़े हुए है जो पतझड़ के समय ये पत्ते नीचे झड़ जाते है और ये भुरे हरे भुरे रंग के मतलब की पुरे अलग है क्योकी ये सुख गये है इनकी पत्तियां और ये दृश्य देखने मे नीचे से बहुत खुबसुरत लग --